और देख सकते हैं ये आउटसाइड काफी घर बने हुए हैं।

ये देखिए दोस्तों आप देख सकते है ये स्कूल में फंक्शन चल रहा है देख रहे है कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो देख रहे है।

ऐ और लोग यहाँ पे पम पान खाने के लिए आते होंगे।